अजीब सा घर दिखाई दे रहा है।

और भी लड़के दिखाइ दे रहे है।

लताएं जड़ नीचे की तरफ लटकती हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर एक व्यक्ति उन बच्चों का फोटो लेते हुए दिख रहा है।

यहां पर हमें एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है और इस ग्राउंड के आगे बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर बीच में एक फाउंटेन भी दिख रहा है या एक मूर्ति दिख रही है।

बड़े बड़े से लाइन से पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक गमला रखा हुआ है जिसमें की एक क्रीम कलर का प्लांट है।

यहां पर ब्लू कलर की चार लाइट्स जल रही है।

चौराहे का नजर आ रहा है जहां पर बहोत सारे कार पार्क दिख रही हैं।

और तांगे के साइड मे फुटपाथ पर हमे बहोत सारे लोग जाते हुए दिख रहे हैं।

इस शॉप का कलर अंदर से पर्पल और व्हाइट कलर है।

और एक लड़की ब्लैक कलर की ड्रेस में खड़ी हुई है।

जिसके हाथ में ड्रिल मशीन है और उसने व्हाइट कलर का शर्ट पहना है और वह ड्रिल मशीन से कुछ काम कर रहा है।

और यह अलमारी अंदर से क्रीम कलर की है।

और उसके आगे झाड़ और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें एक लेडिस वेयर का शॉप दिखाई दे रहा है।

ऊपर की तरफ ए_सी लगा है और कुछ एल_इ_डी लाइट्स लगी हुई है।

यहां पर हमें रात का दृश्य दिख रहा है।

और ऊपर की तरफ एक पंखा लगा हुआ है।

यहां पर हमें बहोत सारे बच्चे लाइन से जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर हमें एक ब्लू कलर की टंकी भी दिख रही है।

योगा करती हुई इमेज दिखाई गई है।

बहोत सारी योगा मैट्स लगी हुई हैं।

जिसमें की वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ सामान रखा हुआ है।

और यह पुराने जमाने के सिक्के हैं।

बहोत ही सुंदर पेंटिंग लगाई गई है।